ठंड में घूम रहे है जाकेट भी पहने--

जिसमें बस स्टैंड दिखाई दे रहा है।

और सामने ब्लू एंड व्हाइट --

सामने ब्राउन कलर की पट्टियां भी हैं।

जो सामने मलटिया बनती हुईं दिख रही--

बुक्स कुछ कॉपियां और सामने कुछ खिलौने नजर--

इसमें नदी भी है और मस्त नीला आसमान भी है।

यह पेट्रोल पंप लग रहा--

सामने नमो जय बीम जय भारत--

सारे लोग दिख रहे हैं।

और पाइप भी दिख रहा--

नीचे ऑरेंज और येलो का--

जो सामने ऑरेंज और व्हाइट दिवाले दिख रही है।